viewing and printing text documents पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि libreoffice writer में डॉक्यूमेंट का अवलोकन और प्रिंट कैसे करें
यह tutorial ubuntu linux os वर्जन 1804 और
libreoffice suite version 635 का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है
अवलोकन विकल्प
यहां मूल रूप से writer में दो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अवलोकन के विकल्प हैं
वे normal और web हैं
normal विकल्प प्रदर्शित करता है कि printed होने पर document कैसा दिखेगा
web विकल्प document को web browser में प्रदर्शित होने की तरह दिखाया जाता है
यह तब उपयोगी है जब html html documents बनाना चाहते हैं
यह तब भी उपयोगी है जब हम document को संपादित करने के लिए पूर्ण screen mode में देखना चाहते हैं
resume odt file खोलें जिसे हमने पहले बनाया है
इस tutorial पेज पर आपको code files link में file उपलब्ध कराई गई है
कृपया file को download और extract करें
एक copy बनाएं और फिर उसका अभ्यास करने के लिए उपयोग करें
normal विकल्प को access करने के लिए menu bar में view menu पर click करें और फिर normal विकल्प पर click करें
web विकल्प को access करने के लिए menu bar में view menu पर click करें और फिर web विकल्प पर click करें
इन दोनों विकल्पों के अलावा भी documents को पूर्ण screen mode में देख सकते हैं
menu bar में view menu और फिर full screen विकल्प पर click करें
full screen mode documents को संपादित करने के लिए उपयोगी है
यह उन्हें projector पर projecting करने के लिए भी उपयोगी है
पूर्ण screen मोड से बाहर निकलने के लिए या तो full screen button या escape की दबाएं
हम वापस writer window पर आ गए हैं
अब एकबार फिर से view menu और फिर normal विकल्प पर click करें
आगे बढ़ने से पहले हम अपने document में एक नया पेज जोड़ते हैं
menu bar में insert menu और फिर page break विकल्प पर click करें
हम document में एक नए पेज पर चले गए हैं
इस बदलाव को अन्डू करने के लिए ctrl + z कीज दबाएं
नया पेज जोड़ने के लिए मैं दूसरा तरीका दिखाती हूं
menu bar में insert menu फिर more breaks पर click करें उपविकल्प के रूप में manual break चुनें
insert break dialog box खुलता है
यहां page break विकल्प चुनें
फिर dialog box में ok button पर click करें
अब इस नए पेज में कुछ लाइनों पर कुछ नमूना text type करें
हम ctrl + enter की एक साथ दबाकर एक और पेज जोड़ेंगे
और नए पेज में इस नमूने text को type करें
एक बार फिर से ctrl + enter कीज को दबाएं और एक और नया पेज बनाएं
और नए पेज में इस नमूने text को type करें
अब zoom विकल्प का उपयोग करना सीखें
किसी document को zoom या आवर्धित करने का सबसे आसान तरीका zoom slider का उपयोग करना है
यह writer window के निचले दाएं कोने पर स्थित है
हम plus और minus icons को slider के दोनों ओर इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं
या हम आवर्धन को बढ़ाने या घटाने के लिए zoom head को इस तरह खींच सकते हैं
अब जूम करने का दूसरा तरीका सीखते हैं
menu bar में view menu पर click करें और फिर zoom पर click करें
context menu में कुछ विकल्प प्रदर्शित होते हैं
हम इन्हें skip करेंगे और zoom विकल्प पर click करेंगे
zoom & view layout dialog box खुलता है
इसमें zoom factor और view layout नामक 2 headings हैं
zoom factor आवर्धन निर्धारित करता है जिसमें document प्रदर्शित करना है
zoom factor में हम कई विकल्प देखते हैं
optimal और फिर नीचे दाईं ओर पर ok button पर click करें
ऐसा करने पर हमें document का सबसे आरामदायक आवर्धित व्यू मिलता है
फिर से zoom & view layout dialog box खोलें
fit width and height और फिर नीचे दाईं ओर पर ok button पर click करें
यह view पेज की संपूर्ण चौड़ाई और ऊंचाई पर document को fits करता है यह एक समय में एक पेज प्रदर्शित करता है
अगला विकल्प fit width है यह पेज को इसकी चौड़ाई में fit करता है
100% view पेज को उसके वास्तविक आकार में प्रदर्शित करेगा
इन दो विकल्पों का स्वतः अभ्यास करें
आगे हमारे पास variable नामक सबसे महत्वपूर्ण zoom विकल्प है
यहां हम zoom factor type कर सकते हैं जिस पर हम document देखना चाहते हैं
उदाहरणस्वरूप variable field में 75% value type करें और फिर ok बटन पर क्लिक करें
देखें कि text zoomed कैसे होता है
dialog box में अन्य विशेषता view layout है
हम यहां दो विकल्प देखते हैं automatic और single page
automatic विकल्प पेजों को साथसाथ प्रदर्शित करता है
single page एक के बाद एक पेज प्रदर्शित करता है
अब कुछ संयोजनों को आजमाएं
उदाहरणस्वरूप हम zoom factor में fit width and height विकल्प चुनेंगे
फिर view layout में automatic विकल्प पर click करें और ok बटन पर click करें
हम देखते हैं कि पेज साथसाथ प्रदर्शित होते हैं
यहां दिखाए गए अनुसार एक बार फिर zoom & view layout dialog box खोलें
इस हम view layout में single page चुनेंगे और ok button पर click करेंगे
हम देखते हैं कि पेज एक के बाद एक प्रदर्शित होते हैं
zoom slider का उपयोग करें और zoom head को slider के centre में लाएं
writer status bar पर 3 और controls हैं जिनका उपयोग पेज displays के लिए किया जा सकता है
ये हमें अपने document के zoom और view लेआउट को बदलने की भी अनुमति देते हैं
icons निम्न हैं:
singlepage view multiplepage view और book view
book view एक खुली किताब की तरह एकदूसरे से सटे दो पेज प्रदर्शित करता है
single page view पर click करें और zoom head को zoom slider के centre में लाएं
अब हम print preview के बारे में सीखेंगे
standard toolbar में toggle print preview icon पर click करें
जब हम प्रिव्यू mode में document देखते हैं तो print preview bar दिखाई देता है
यह मूल रूप से दिखाता है कि जब यह printed होता है तो document कैसा दिखेगा
document के सभी पेज देखने के लिए नीचे scroll करें
इस screen से कोई भी print icon पर क्लिक करके document को print करने के लिए आगे बढ़ सकता है लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा
प्रिव्यू बंद करने के लिए close preview button पर click करें
हम menu bar में file menu पर भी click कर सकते हैं और print preview पर click करें
आगे हम सीखेंगे कि अपने लिबर ऑफिस writer document को print कैसे करें
कृपया सुनिश्चित करें कि printer connection आपकी machine पर सही ढंग से कॉन्फ़िगर किया गया है
पूरे document को सीधे print करने के लिए standard toolbar में print icon पर click करें इसे क्वीक प्रिंटिंग कहा जाता है
हम print विकल्प का उपयोग करके अपने document को print करने पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं
menu bar में file menu पर click करें और फिर print पर click करें
screen पर print dialog box प्रदर्शित होता है
इस dialog box में विभिन्न settings वाले 2 टैब हैं
हम या तो इन्हें default रूप में छोड़ सकते हैं या अपनी printing आवश्यकता के अनुसार setting बदल सकते हैं
printer dropdown में print to file विकल्प चुनें
इस विकल्प का उपयोग मुख्य रूप से document को pdf फ़ाइल format में print करने के लिए किया जाता है
dialog box के निचले भाग पर स्थित button print to file है इस पर क्लिक करें
सेव करने के लिए स्थान चुनें और नए document के लिए फ़ाइल नाम लिखें फिर ऊपर दाईं ओर मौजूद save बटन पर क्लिक करें
document फ़ाइल में printed किया जाएगा
अपने keyboard पर ctrl + p कीज दबाएं यह print डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शार्टकट है
इस समय printer में हम अपने कॉन्फ़िगर किए गए printer का name चुनेंगे
range and copies में मैं pages में 2 और number of copies में 3 चुनूंगी
अंत में printing शुरू करने के लिए ok button पर click करें
जिन पेजों और प्रतियों का हमने उल्लेख किया है वे अब printed हो जाएंगे
अगला हम देखेंगे कि अन्य print विकल्पों को कैसे access करें
menu bar में tools menu पर click करें और फिर options पर click करें
libreoffice के पास arrow पर click करें और फिर print पर click करें
screen पर एक dialog box दिखाई देता है जिससे हमें चयन करने के लिए कई विकल्प मिलते हैं
इन विकल्पों को आवश्यकतानुसार चुनें
ये settings अब भविष्य में libreoffice writer से सभी prints के लिए मान्य हैं
मैं सभी default settings रखूंगी और फिर सबसे नीचे ok button पर click करूंगी
ctrl + s कीज दबाकर अपनी file सेव करें
फिर ऊपर दाईं ओर मौजूद x icon पर क्लिक करके इसे बंद करें
इसी के साथ हम इस स्पोकन tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा:
नियतकार्य के रूप में
this is libreoffice writer text type करें
view चुनें और full screen विकल्प चुनें
full screen विकल्प से बाहर आएं
सभी उपलब्ध zoom विकल्पों को समझें
सभी उपलब्ध page preview विकल्पों को समझें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries को इस forum में post करें
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया था
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद